कुछ लोग फ्लाइट में बैठने के लिए तैयार खड़े हैं सामने एक औरत भी खड़ी है औरत के हाथ में एक पर्स और बच्चा है।

उसकी साइड पे लड़की ही खड़ी है। एक ऑटो में एक--

गमले लाल कलर के हैं कुछ सफेद कलर के हैं कुछ ऑरेंज कलर के हैं सारा मैदान हरा भरा हुआ --

सेंटर है जिसका नाम पंचकर्मा है।

जिसपे नेशनल इलेक्ट्रिक ड्रायर्स ड्राई क्लीनर्स लिखा हुआ--

सामने एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में कुछ मेज और कुर्सियां पड़े हुए--

सामने वाली बिल्डिंग बहुत सुन्दर है।

कपड़े लेने आए हैं कुछ कपड़े हैंगर्स में लगे हुए हैं सामने एक लड़का--

खेलने के लिए सामान पड़ा हु--

सामने एक सब्जी मंडी हैं एक आदमी सब्जी बेच रहा--

और एक स्टूल भी पड़ा हुआ है स्कूल के लातों का कलर सफेद है और एक पानी की केनी भी पड़ी हुई--

सामने एक कपड़ों का शोरूम है जिसमें कुछ कपड़े टंगे हुए है और नीचे चार कैपरी टंगी हुई--

बस का रंग सफेद है बस के ऊपर शर्मा लिखा हुआ है।

ब्लू कलर का टॉप और ब्लैक कलर की जींस पहनी हुई है दूसरी ने--

जो कि पौधों को पानी दे रही है।